यहां पे एक आदमी भी जाता हुआ दिख रहा है अंदर बहुत लोग भी खड़े हैं ऊपर कांच की खिड़की भी है और कुछ लिखा भी हुआ है ।

ये एक मेले के झूले जैसा दिख रहा है जहाँ पर बहोत सारे घोड़े लगे हुए हैं ऊपर एक पीले कलर की लाइटे जल रही है ऊपर सटर लगी हुई है पीछे पहाड़ दिख रहे हैं लोहै की बाउंड्रीज --

गार्डन जैसा है जहाँ बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए लाइट के खंभे लगे हुए है बाउंड्रीज बनी है जो ब्राउन कलर की है नीचे रोड है जो सिल्वर कलर की है।

यह नीचे उन्होंने चप्पल पहन रखी है ऊपर बड़े -बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो पीछे बिजली के खम्बे भी दिख रहे हैं और नीचे हरी - हरी घास भी है और पीछे लोग घूमते हुए भी दिख रहे हैं।

जिस क ऊपर पोस्टर लगा है उस क ऊपर कुछ लिखा नीचे मशीन लगा हुआ है जिस पर एलईडी टीवी

उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है बगल में एक ड्रम भी रखा हुआ है साइड में एक आदमी जाता हुआ भी दिख रहा है।